इस दृश्य में दिखाया गया है यह एक सभा है जो उजला रंग से पेंट किया गया है।

ई पोधा में कुछ फुल भी है।

इस तस्वीर में दिखाया गया है बिजेंद्र सिंग पुस्तकालय यह एक पुस्तकालय है जरखा सिंगोड़ी पोलीगंज पटना यह पटना में स्थित है।

इस दृश्य में दिखाया गया है यह एक नदी तालाब का दृश्य है तालाब के चारो और चबूतरा बनी हुई है जो सीढ़ी बनी हुई है सीढ़ी पर कुछ लोग बैठे हुए है सीढ़ी के बगल में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक मूर्ति रखी लगाई गई है जो बुद्ध जी की है बुद्ध जी के मूर्ति के आगे में दो और मुर्तियाँ है यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है।